वाहन से कुछ व्यक्ति हेलमेट लगाये हुए है पास में उसके मकान बने हुए हैं ।

यहां एक रोड दिखाई दे रहा है और यहां एक आदमी है जो कि फोन पर बात कर रहा है।

यह एक बहुत बड़ा प्लेन है जो की नीले और सफेद रंग का है यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं ।